और इस फोटो में एक बच्चे का केक कटत है।

एक ने सफेद रंग का साड़ी पहना है बाकी सभी ने--

काफी सारे दरवाजे दिखत रहे।

और बगल में लिखा है समय आठ से रात के दस बजे तक।

एक टेबल है जो कि नीले रंग की दिखत रही।

लेक्चर बोर्ड नजर आ रहा है।

कुछ झूले भी दिखत रहे लटकन खातर।

और यहां पर सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

हईस फोटो में सामने काफी सारे ट्रक के पोस्टर लगे हुए हैं।

और पीछे एक अंकल दिख रहे हैं।

अ इस फोटू में तीन छोरियां दिखाई दे रही हैं।

काफी सारी औरतें नजर आ रही है जिन्होंने मास्क लगाए हैं।

नीचे काफी सारी कुर्तियां लगी हैं लेडीज सूट हैं।

आ इस फोटो में एक औरत दिखाई दे रही हैं।

सुबह का समय नजर आ रहा है फोटू को देख कर।

आ इस फोटू में सामने शेरावाली माता दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक लेडी दिखाई दे रही है ए थोड़े बहोत पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में दो कार नजर आ रहा है सामने एक बाढ नजर आ रहा है रात का समय है।